यहाँ पर देख रहे है कितने सारे बाइक खड़े हुए रहते है यहाँ पर। मुखिया और विशेष चुनाव हो रहा है। देख सकते हैं की साइकिल खड़ी है और देख सकते हैं कि मंजिला और दो मंजिला है। सामने जे.सी.बी. भी चल रहा है।